कई तरह के सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और दुकान की छतो पर--

जहां पर सुंदर से पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और उसके साथ में फर्श पर एक--

जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह है किसी घर का फोटो है जो देखने में बहुत ही सुंदर घर है।

इस घर के अंदर कुछ हमें पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक लड़का भी खड़ा है जो सामान को--